ये एक ऑफिस है जहाँ पर बहोत सारी चेयर्स दिखाई दे रही है रेड कलर की काफी सारे लकड़ी के बॉक्स बने हुए दिखाई दे रहे है जो काफी सुन्दर लग रहे है यहाँ पर रेड कलर का कारपेट दिखाई दे रहा है।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

यहाँ पर एक बड़ी सी मि मिट्टी उठाने वाले मशीन दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा सा गड्डा दिखाई दे रहा है जिसमे मशीन डली हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर काफी बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारी मिट्टी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर बहोत सारी चेयर्स पड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पे काफ़ी सारा सामान दिखाई दे रहा।

तीन वाइट कलर की मूर्तियाँ दिखाई दे रही है जो काफी बड़ी-बड़ी है जिनके के गोल्डन कलर से डिज़ाइन किया हुआ है काफी सुन्दर लग रही है इनकी नज़दीकी जगह ब्लू कलर की बनी है।

तार ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कुछ रेड कलर के भी पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये जगह काफी खूबसूरत लग रही हैं यहाँ पर काफी दूर तक पत्ते ही पत्ते दिखाई दे रहे--

एक बर्तन की दुकान है जहाँ पर बहोत सारे अ-स्टील के बर्तन रखे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर कुछ पिलर खड़े हुए हैं जिनमे पंखे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।